नमस्कार
जावा एप्लिकेशन पर adding a file chooser के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
एप्लिकेशन बनाना
एप्लिकेशन फॉर्म बनाना
file chooser जोड़ना
file chooser configure करना
और application रन करना
इसके लिए मैं उपयोग कर रहा हूँ लिनक्स operating system उबुंटू version 1204
और netbeans ide 711
इस tutorial में हम javax swing jfilechooser component का उपयोग करके java application में file chooser जोड़ना सीखेंगे
इस अभ्यास के भाग के रूप में हम एक छोटा java application बनाना सीखेंगे जो text area txt फाइल loads करेगा
पहले java application को बनाते हैं
ide launch करें
main menu से file और new project चुनें
java category और the java application project type को चुनें
और next पर click करें
project name field में type करें jfilechooserdemo
create main class चेकबॉक्स को मिटाएँ
सुनिश्चित कर लें कि set as main project चेकबॉक्स चयनित है
finish पर click करें
यहाँ हम jframe कंटेनर बनायेंगे और इसमें कुछ components को जोड़ेंगे
source packages node पर right click करें
new> other चुनें
swing gui forms श्रेणी को चुनें और jframeform type चुनें
next पर click करें
class name के लिए type करें jfilechooserdemo
package field में type करें jfilechooserdemo resources
finish पर click करें
properties window में title properties को चुनें
और type करें demo application
सुनिश्चित करने के लिए enter दबाएँ
palette में swing menus श्रेणी खोलें
menu bar component को चुनें और jframe के ऊपरी बायें भाग पर खीचें
menu bar component के edit item पर right click करें
context menu में delete चुनें
add एक menu item को जोड़ते हैं जो running application से filechooser को खोलने की अनुमति देता है
सुनिश्चित करें कि यहाँ आपके द्वारा अन्य menu item खींचने से पहले menu bar का चयन किया गया है
palette में swing menus श्रेणी में नये menu item को चुनें
इसेmenu bar से खींचे और menu bar के file item पर रखें
design view में jmenuitem1 पर right click करें
और context menu से change variable name चुनें
item को open नाम दें और ok पर click करें
सुनिश्चित करें कि jmenuitem1 अभी भी design view में चयनित है
component के text को edit करने के लिए space bar दबाएँ
open से text को बदलें और पुष्टी करने के लिए enter दबाएँ
open menu item के लिए action handler निर्दिष्ट करें
menu item open पर right click करें और context menu से events action action performed चुनें
gui builder स्वचालित रुप से source view पर जाता है
एक नया महत्वपूर्ण handler method openactionperformed उत्पन्न होता है
design view पर वापस जाएँ
file chooser से बाहर निकलने के लिए एक menu item जोड़ते हैं
palette में swing menus श्रेणी को चुनें
menu item चुनें
इसे form पर open menu item के नीचे menu bar पर रखें
orange हाइलाइट पर ध्यान दें जो कि इंगित करता है कि jmenuitem1 कहाँ रखा जा रहा है
design view में jmenuitem1 पर right click करें
context menu से change variable name चुनें
item को exit नाम दें औऱ ok पर click करें
सुनिश्चित कर लें कि jmenuitem1 अभी भी design view में चयनित हैं
component के text को edit करने के लिए space bar दबाएँ
exit से text को बदलें और पु्ष्टि करने के लिए enter दबाएँ
exit menu item के लिए action handler निर्दिष्ट करें
menu item exit पर right click करें
context menu से events action action performed चुनें
gui builder स्वचालित रूप से source view पर जाता है
एक exitactionperformed named नया महत्वपूर्ण method तैयार होता है
exitactionperformed node openactionperformed node के ऊपर navigator window में प्रदर्शित होता है
यदि आप अपना navigator नहीं देख सकते हैं तो
menu bar में window menu पर जाएँ
navigating चुनें और navigator पर click करें
यहाँ आप openactionperformed node के ऊपर प्रदर्शित होने वाले exitactionperformed node को देख सकते हैं
exit menu item शुरू करने के लिए
statement system exit 0; को exitactionperformed method body में सम्मिलित करें
design mode पर वापस जाएँ
palette की swing controls श्रेणी से form पर एक text area खींचे
बाद में file chooser द्वारा प्रदर्शित text के लिए जगह बनाने के लिए जोड़े गए component का आकार बदलें
textarea के रूप में variable का नाम बदलें
फिर वास्तविक file chooser को जोडें
यदि आपका navigator window खुला नहीं है तो इसे खोलने के लिए window navigating a navigator चुनें
औऱ navigator में jframe node पर right click करें
context menu से add from palette swing windows और file chooser चुनें
आप navigator में देख सकते हैं कि jfilechooser form में जोड़ा गया था
jfilechooser node पर right click करें औऱ variable को filechooser नाम दें
ok पर click करें
हमने अब file chooser को जोड़ा है
अगला चरण अपनी पसंद का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए file chooser को configure करना है
हम custom file filter को भी जोड़ेंगे और आपके application में file chooser एकीकृत करेंगे
navigator window में jfilechooser को चुनने के लिए click करें
अब properties dialog box में इसकी properties को edit करें
palette के नीचे properties window में
dialogtitle को this is my open dialog में बदलें
पुष्टि करने के लिए enter दबाएँ
अब source mode पर जाएँ
अब अपने application में filechooser एकीकृत करने के लिए
मेरे पास code का भाग मौजूद है जिसे में मौजूदा openactionperformed method में copy और paste करुँगा
यह उदाहरण file कंटेंट्स को पढ़ता है और textareaमें उन्हें प्रदर्शित करता है
अब हम यूजर द्वारा clicked की गई फाइल को निर्धारित करने के लिए filechooser s getselectedfile method को कॉल करेंगे
मैं इस code को अपने clipboard पर और ide के source view में copy करूँगा openactionperformed method के अंदर paste करूँगा
यदि आपके code में editor errors reports करता है code में कहीं भी right click करें और fix imports चुनें
add एक custom फ़ाइल filter जोड़ दें जो कि केवल txt files प्रदर्शन के लिए file chooser को बनाता है
design mode पर जाएँ और navigator window में filechooser चुनें
properties window में filefilter properties के आगे ellipsis button पर click करें
filefilter dialog box में combobox से custom code चुनें
text field में new mycustomfilter type करें
औऱ ok पर click करें
custom code शुरू करने के लिए हम mycustomfilter class लिखेंगे
यह भीतरी या बाहरी class filefilter class का विस्तार करेगा
मैं इस code के भाग को
import statements के नीचे अपने class के source कोड में कॉपी औऱ पेस्ट करूँगा
यह भीतरी या बाहरी class filefilter class का विस्तार करेगा
project window में jfilechooserdemo project पर right click करें सेम्पल project को रन करने के लिए run चुनें
run project dialog box में jfilechooserdemo resources jfilechooserdemo main class को चुनें
ok पर click करें
running demo application में कार्य को गति प्रदान करने के लिए file menu सेopen चुनें
text area में इसके कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए किसी भी text file को खोलें
मैं sample txt file चुनता choose औऱ open चुनता choose
filechooser text file का कंटेंट्स प्रदर्शित करता है
application को बंद करने के लिए file menu में exit चुनें
इस tutorial में आपने सीखा
java application में file chooser को जोडना औऱ
file chooser configure करना
नियत कार्य के रूप में समान demo project का उपयोग करें जिसे हमने बनाया है और निम्नलिखित फीचर्स को जोडेंः
menu bar के नीचे save menu item जोडें
सभी menu items के लिए keyboard shortcuts जोड़ें
कार्य सेव करने के लिए file को सेव करने के लिए code के भाग को जोड़ें
मैंने पहले ही इसी तरह का एक नियत कार्य बनाया है जहाँ filechooser file menu के नीचे सेव विकल्प को प्रदर्शित करता है
और आपको text file को सेव करने के लिए विकल्प देता है जिसे आपने खोला है
spoken tutorial project के बारे में
screen पर दिखाए गए link पर उपलब्ध video देखें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
यदि आपके पास अच्छा bandwidth नहीं है तो आप इसको download करके भी देख सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
इस mission पर अधिक जानकारी निम्न link पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद